ये एक फोटो है वो दिखा--

और इसके पीछे एक ये बड़ा सा कोई--

और ये एक बड़ी सी कोई मूर्ति है।

और हिण्डबेयर कंपनी का जो--